जिसके पास में एक स्पोर्ट स्टेडियम का गेट बना हुआ है।

और दरवाजे के दोनों साइड में दो गमले रखे हैं और उसी के सामने दो कुर्सी भी डली हुई हैं।

और जी के साथ में ऊपर जाने के लिए लोहे की सीढ़ियां लगी हुई है।

और कुछ ईंटें भी पड़ी हुई है।

ऐसे कुछ औरतें कुछ मर्द भी इसके सामने--